और रोड पर बहुत सारे ऑटो जिनमें आदमी बैठे हैं।

जो क्रिश्चियन के दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।